यह काफ़ी अच्छी तरह से यह लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

सामान मिलता है यह होटल काफी अच्छा है यहाँ पर लोगों को --